बहुत सारी घास लगी हुई है बहुत बड़ा मैदान है बहुत सारे--

ए कांच की टेबल रखी है उसमे बताशे रखे हुए है।

वहाँ वाइट कलर की पुत्ती हुई है।

पीले कलर के ऑरेंज कलर के बोरियाँ रखी हुई है एक पीला डंडा लखा हुआ है।

इसपे एक पीले कलर का कुछ पोस्टर लिख थाना बना हुआ है यह एक एक पास में वाइट कलर की बिल्डिंग बनी है।

उसके सामने बहुत सारे अंकल उन खड़े है एक लड़का--

निचे टइया रखे है पाइप रखे है दो कारे खड़ी है यह सर्विसिंग की यह दुकान है।